यह तस्वीर एक मैदान की लग रही है इस मैदान मे कई छोटे-बड़े पेड़ है चारों ओर और इस मैदान मे अनेक हिरनो दिख रही है।

यह तस्वीर एक पेट्रोल पम्प की है पेट्रोल का मतलब तो आप समझते ही हो आजकल की दुनिया की सब से मेहरी स-समान--

यहा पे चारों और बड़े-बड़े पैड दिख रहे है इस मेदान मे कई लोगों की भीड़ जम-जमाहट भी दिख रही है इस मेदान को देख खेला मेदान लग रहा है।

इस मंदिर मे एक लोहे की गेट लगी हुई है मंदिर के ऊपर एक त्रिशूल भी बनाऐ हुई है और एक ॐ भी बनाई हुई है।

दो सुन्दर- सुन्दर फूल भी रखे हुए है यह चर्च को देख मुझे बहुत अच्छा लगा।

इन किताबों को पढ़ने में मुझे एकदम दिलचस्प नहीं है।

यह तस्वीर एक मछली की बाजार की है।

जो बहुत ही खुशी से और बहुत ही उल्लास से करने में लगे हुए हैं। इन बच्चों को देख मुझे अपने बचपन की याद आ गई।

यह तस्वीर एक नाई की दुकान की है। यहां पे एक व्यक्ति है जो नाई है वो एक चाचा के बाल काटने में लगे हुए हैं।